यहाँ पे स्कूटी गाड़ी भी दिखाई दे रही है और एक गाड़ी भी दिखाई दी गुलाबी कलर की साइकिल भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर--

पत्थल भी दिखाई दे रहे है जो पत्थल मूर्ति भी दिखाई दे रही है यहाँ पे खंभे भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर बिल रेड कलर से पेंट हुई हे गुलाबी कलर से भी पेंट हुई हे यहाँ पर पत्थल दिखाई दे रहे हे नीचे पतले पतले पत्थल भी लगे हुए है चोड़े भी पत्थल डले है यहाँ पे बहुत --

यहाँ पे एक बस भी दिखाई दे रही हे यहाँ पर एक गाड़ी भी लगी दिखाई दे रही है यहाँ पर बहुत सारी जाली भी लगी हैं यहाँ पे सूंदर कलर पेंट भी लगा हुआ हैं --]